एक रे ब्लू कलर का कारपेट बिछा है रेड कलर का कारपेट बिछा है बहुत सारे बच्चे है।

ये एक लेक है जिसमे बोहोत सारा पानी है भी है।